लिखा है गोपालगंज शाखा और इंग्लिश में भी गोपालगंज शाखा ही लिखा हुआ हैं।

उधर पोस्टर भी लगा हैं।

नये - नये टिफिन में सजाया गया है।